इस जामुन का तिनके का रंग ग्रीन है ।

बादल भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं।

यह एक सुबह का दृश्य है।

उसी के सामने कुछ डिब्बे रखे गए हैं जिसका रंग लाल है।

यह दिन का दृश्य दिख रहा है।

इस दुकान में एक शटर भी लगाया गया है जिसका रंग नीला है।

बस के पास बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और कुछ लोग बस के ऊपर चढ़े हुए हैं।

चरखुट्टे चरखुट्टे बॉक्स बनाए गए हैं जिसमें और भी बाकी सामान रखी गई है ।

नदी के किनारे बहोत सारी पत्थरें रखी गई हैं।

इस दृश्य में हमें एक क्लीनिक दिख रही है जिसमें बहुत सारी मशीनें रखी हुई हैं।

यह सुबह का दृश्य है।

इस दृश्य में हमें कुछ मटके दिख रहे हैं जिसके नीचे कुछ सामान बन रहा है।

नीचे की ओर कोयला जल रहा है जिसका रंग काला और लाल दिख रहा है।

टेबल के सामने कुछ मशीन रखी हुई है।

इस दुकान के बाहर बहुत सारी बड़ी बड़ी बोरियां रखी गई हैं।

यहां पर पीला लाल वाइट ब्ल्यू कलर का गुब्बारे लगी हुई हैं।

पीछे की तरफ पर्दा लगाया हुआ है दीवाल का रंग पर्पल है।

इस पहाड़ का रंग काला है।

यह दृश्य एक क्लास रूम का है जहां बहोत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं।

उसी के सामने एक पेड़ पे भारत का झंडा लगा हुआ है।

बहुत सारी लाइटे लगाई गई है।

बहोत सारे कुर्सियाँ भी दिख रही हैं जिसका रंग काला है।

नदी के बगल में एक पूल बनाया गया है।

ऊपर की ओर बॉक्स में बहोत सारे रंग बिरंगे कपड़े रखे गए हैं।

इसमें ए_सी भी लगी हुई है यह एक मंजिला घर है।